इसका कलर ऑरेंज और व्हाइट कलर का है।

बगल में एक बाइक लेकर एक आदमी खड़ा भी है।

बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं बगल में एक टेंपो भी खड़ा है।

यह एक फर्नीचर एवं पलंग दुकान का दृश्य है।

यहां पे वाइट सोफा एवं टेबल भी रखे गए हैं जो लकड़ी द्वारा बनाए गए हैं।

पीछे में एक बहुत बड़ा पहाड़ भी है तथा पेड़ पौधे भी लगाए हुए हैं।

सूखे बालू भी दिखाई दे रहे हैं आओ छोटे छोटे घास भी दिखाई दे रहे हैं।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

बगल में एक खपड़े का घर भी दिखाई दे रहा है।

बहोत सारे वर्कर काम भी कर रहे हैं।

एक वाइट बल्ब भी दिखाई दे रहा है।

यह बेंच प्लास्टिक का बना हुआ है जो ब्राउन कलर का है।

पीछे में एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

यह एक मीटिंग का दृश्य है जहां पर बहुत सारे बच्चे एवं शिक्षक बैठे हुए हैं।

बगल में एक बॉटल भी रखी गई है तथा एक कार्टून भी रखी गई है।

यहां पे बहुत सारे अलमीरा एवं बेंच टेबल बनाए हुए हैं।

दीवाल पे पुट्टी पेंट भी किया गया है जो वाइट कलर का है।

बहुत सारे रड भी दिखाई दे रहे हैं।

आंगन में छोटा सा पौधा भी दिखाई दे रहा है।

बहोत सारे पानी एवं पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

व्हाईट व्हाईट जैसा बादल मंडरा रहे हैं।

एक फ़िल्टर करने वाला बोटल दो बोटल भी रखे गए हैं।

फर्श कारपेट द्वारा बनाया गया है और वह हरे कलर का है।

यह एक लोहे के अपार्टमेंट का दृश्य है जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे बाइक भी लगाए गए हैं तथा एक लाल कलर का कार भी लगाया गया है।

रास्ते सीमेंट द्वारा बनाए गए हैं।

बाहर में लिखा हुआ है ऑफिस तथा टी वो टू लिखा गया है।

यह एक अपार्टमेंट का दृश्य है जिसके बाहर में दो आदमी खड़े हैं।

यह एक ज्वेलरी शॉप का दृश्य है जिसके फर्श टाइल्स द्वारा बनाए गए हैं।